ये हमें कहीं का दिख रहा है जहाँ स्टैंड है ऑटो खड़ी है लोग जाने के लिए तैयार है एक-दो दिन का दुकान दिख रही है।

और-र शाम का समय है सूर्य नहीं दिखाई रहा है इसमे मतलब शाम का ही समय होगा।

ये एक नदी है यहाँ नाव नाव दिख रही है हमें दिखाने में मिल रही है कुछ लोग उसे पर बैठे हुए हैं कोई उसे चला रहा है।

ये कोई घूमने वाली जगह है वहां लोग घूमने आते होंगे यह सफेद कलर का बना हुआ है देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है दो तीन लोग इसके फोटो भी ले रहे हैं फोटो क्लिक करवा रहे हैं पड़े पौधे दिख रहे है मुझे देखनें में यहाँ पे बहोत अच्छा लग रहा है।